C में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एनकैप्सुलेशन और दाता एब्स्ट्रैक्शन
हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु ओएस वर्जन 1110 g कंपाइलर वर्जन 461 अब क्लासेज़ के परिचय के साथ शुरू करते हैं
क्लास एक कीवर्ड क्लास प्रयोग करके बना है
इसमें दाता और फंक्शंस होते हैं
क्लास कोड और दाता को लिंक करता है
क्लास के दाता और फंक्शंस क्लास के मेम्बर्स कहलाते हैं
अब ऑब्जेक्ट्स पर जाते हैं
ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स हैं
ये एक क्लास की कॉपी हैं
उनमे से प्रत्येक प्रॉपर्टीज और बिहेवियर रखता हैं
प्रॉपर्टीज दाता एलीमेन्ट्स से परिभाषित होती हैं और बिहेवियर मेथड्स नामक मेम्बर फंक्शन्स से परिभाषित होता है
अब क्लास के लिए रचनाक्रम देखते हैं
यहाँ क्लास एक कीवर्ड है जो क्लास को परिभाषित करने में प्रयोग होता है
class नामे क्लास का नाम है
पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर हैं
और यहाँ हमने वो डेटा मेम्बर्स और वो मेंबर फंक्शन्स जैसे पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड परिभाषित किये हैं
हम क्लास को इस प्रकार बंद करते हैं
अब एक उदाहरण देखते हैं
मैंने एडिटर पर कोड पहले टाइप कर लिया है
मैं इसे खोलूंगी
ध्यान दें हमारा फाइलनेम क्लास हाइफेन ओबीजे डॉट सीपीप है
इस उदाहरण में हम क्लास प्रयोग करके वर्ग के एरिया की गणना करेंगे
मैं अभी कोड समझाती हूँ
यह आईओस्ट्रीम हमारी हेडर फाइल है
यहाँ हम एसटीडी नेमस्पेस प्रयोग कर रहे हैं
यह स्क्वेयर नामक क्लास के लिए घोषणा है
यहाँ मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर घोषित नहीं किया है
अतः डिफ़ॉल्ट रूप से यह प्राइवेट है
इसलिए वेरिएबल एक्स क्लास स्क्वेयर का प्राइवेट मेम्बर है
यह पब्लिक स्पेसिफायर है
फंक्शन एरिया पब्लिक फंक्शन है
और इस प्रकार हम क्लास बंद करते हैं
अब एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में अधिक जानने के लिए अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं
पब्लिक स्पेसिफायर पब्लिक स्पेसिफायर दाता को क्लास के बाहर एक्सेस करने की अनुमति देता है
एक पब्लिक मेम्बर प्रोग्राम में कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है
प्राइवेट स्पेसिफायर प्राइवेट की तरह घोषित मेम्बर्स क्लास के बाहर प्रयोग या एक्सेस नहीं किये जा सकते हैं
प्राइवेट मेम्बर्स केवल क्लास के मेम्बर्स के द्वारा उपयोग किये जा सकते हैं
प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड मेम्बर्स क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किये जा सकते हैं
ये डिराइव्ड क्लास से एक्सेस किये जा सकते हैं
अब अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं
यहाँ इस स्टेटमेंट में हमारे पास क्लास नेम है
स्कोप रिजोल्यूशन आपरेटर और फंक्शन नामे
हमे यह ऑपरेटर प्रयोग करना ज़रूरी है
यह स्पष्ट करता है कि फंक्शन एरिया ग्लोबल फंक्शन नहीं है
यह क्लास स्क्वायर का एक मेम्बर फंक्शन है
यहाँ हमने इंट आ आर्ग्यूमेंट पास किया है
अब स्कोप रिजोल्यूशन आपरेटर के बारे में अधिक जानने के लिए स्लाइड्स पर वापस आते हैं
यह छुपे हुए दाता को एक्सेस करने में प्रयोग होता है
फंक्शन या वेरिएबल को उसी नाम के साथ एक्सेस करने के लिए हम स्कोप रेसोलुशन ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं
माना कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के नाम समान हैं
वरीयता लोकल वेरिएबल को मिलती है
हम स्कोप रेसोलुशन ऑपरेटर प्रयोग करके ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं
अब अपना प्रोग्राम खोलें
यहाँ आ की वैल्यू एक्स में संचित होती है
फिर हम स्क्वायर का एरिया रिटर्न करते हैं
यहाँ एक्स एक प्राइवेट मेम्बर है
प्राइवेट पैरामीटर्स एक्सेस करने के लिए हमने पब्लिक मेम्बर आ प्रयोग किया
प्राइवेट मेम्बर्स हमेशा छुपे रहते हैं
यह हमारा मैन फंक्शन है
यहाँ एसक्यूआर क्लास स्क्वेयर का ऑब्जेक्ट है
इस प्रकार हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं
class नामे के आगे object नामे
यहाँ हम ऑब्जेक्ट एसक्यूआर और एक डॉट ऑपरेटर प्रयोग करके फंक्शन एरिया को कॉल करते हैं
फिर हम आर्गुमेंट को 4 देते हैं
हम एक्स की वैल्यू को 4 सेट करते हैं
यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब सेव पर क्लिक करें
अब प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं
अपने कीबोर्ड पर एकसाथ Ctrl Alt और ट कीज़ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कंपाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस क्लास हाइफेन ओबीजे डॉट सीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस क्लास एंटर दबाएं
टाइप करें class डॉट स्लैश क्लास एंटर दबाएं
आउटपुट प्रदर्शित होता है एआरईए ओएफ थे स्क्वेयर इस 16 अब अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं
अभी तक हमने देखा दाता और फंक्शंस क्लास में एक साथ संयुक्त होते हैं
क्लास सिंगल यूनिट है
जिसमे उनका प्रयोग करके डेटा और फंक्शन को ग्रुप किया जाता है
यह मैकेनिज़म एनकैप्सुलेशन कहलाता है
फिर हमने प्राइवेट और पब्लिक मेम्बर्स के साथ क्लास देखा है
प्राइवेट डेटा छुपा हुआ है
इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता
यह मेकनिज़म दाता एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है
इंटरफेस दिखता है पर कार्यान्वयन छिपा रहता है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
अब अपनी स्लाइड्स पर वापस जाते हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एनकैप्सुलेशन दाता एब्स्ट्रैक्शन प्राइवेट मेम्बर्स इंट एक्स पब्लिक फंक्शन्स इंट एआरईए क्लासेस क्लास स्क्वायर ऑब्जेक्ट बनाना स्क्वेयर एसक्यूआर ऑब्जेक्ट एसक्यूआर डॉट area प्रयोग करके एक फंक्शन कॉल करना
एक नियत कार्य में एक प्रोग्राम लिखकर दिए हुए सर्कल का पेरिमीटर ज्ञात करें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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालोँ को प्रमाणपत्र देते हैं
अधिक जानकारी कर लिए कृपया contactspoken tutorialorg को लिखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद